लाल कलर के है कुछ कुछ हर सफेद कलर के है एक पिक लगी हुई दिखाई दे रही है एक घूमने वाला पंखा लगा हुआ दिखाई दे रहा है एक लाल कुर्सी भी दिखाई दे रही है।

यह भी एक बस स्टेंड टाइप का लग रहा हैं यहाँ पर कुछ गाड़िया रखी हुई दिख रही हैं यहाँ पर एक मकान भी दिखाई रहा हैं।

यहाँ पर कुछ बच्चे दिखाई दे रहे है और कुछ व्यक्ति जाते हुए कुछ में है कुछ बाहर बैठे हुए है।